उजला कलर का आसमान दिख रहा है। बड़ा सा छोटा पेड़-पौधा भी दिख रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है दिखने --

व्हीकल मार्ट हैं डेंटिक्स का है यहाँ पे एक आदमी है हाफ पैंट पहना हुआ है हाफ टीशर्ट पहना हुआ है उजला कलर का है ।